और कुछ लोग है जिनके पास अह बंसी ढोलक--

यहा पर हमे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है कुछ लोग झुंड बनाके खड़े हुये है और कुछ वीडियो बना रहे है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर कुछ पेड़ लगे हुए है कुछ पेड़ नीचे लगे हुए है।

और स्टेज पर परदे लगे हुए है कुछ गमले रख रखे है और गमलो मे अच्छे हरे-हरे पेड़-पौधे लगे हुए है और म परदे फुल वगेरा लगे है।

यहाँ पर हमे बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी पेड़ लगे है और बहुत सारी बिल्डिंग लगी हू बिल्डिंग खड़ी हुई है और बिल्डिंग मे बहुत सारी विंडो है।

और कुछ कारे दिखाई दे रही है ऑटो रिक्षा दिखाई दे रहे है कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है खुला आसमान दिखाई दे रहा है और सड़क दिखाई--

और बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है जिसमे फुल लगे हुए है और कुछ पत्तिया दिखाई दे र--